का नजारा बहुत ही अच्छा दिख रहा है दोनों तरफ दीवारें हैं और आगे चल कर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक मोटर दिखाई गई है।

एक जा रही है और यह एक दीवार में--

नीचे बैठी हुई है और उसके ऊपर और यहां पर बहुत सारी वायरिंग दी गई है।

जो कि इस तरफ तार लगे होने के कारण दिखाया जा रहा है दूसरी तरफ कुछ पक्षी बतख जैसे बैठे हुए हैं पानी के ऊपर।

तो यहां पर बहोत सारे ट्रक ट्रकों की ट्रैलियां वगैरह--

और फोटो को बहोत ही ज्यादा एडिट किया है जिस पेड़ पौधे ब्लैक कलर के दिखाए जा रहे हैं।

यहां पर एक मंदिर दिखाया गया है जो की--

यहां पर एक डैम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है जिसके अंदर--

हरा से और ऊपर की तरह लाइटिंग लगी हुई है।

यहां पर भिवानी पेट गैलरी दिखाया गया जहां पर--

जोकि बहुत ही अच्छा लग रहा है तो जगह जगह यहां पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--